यह विजय पुस्तक भंडार है यहां पर नए साल की डायरी कैलेंडर और सपोर्ट्स का सामान भी --

गाजर नींबू में अलग अलग थैले में बंधे हुए आलू है धनिया है मेथी है पालक है पुदीना है कच्चे --

यह एक नर्सरी है यहां पे खूब सारे पेड़ पौधे वगैरह घास वगैरह मिलती है खाद वगैरह --

कई अलग अलग केले का पेड़ तुलसा जी का पेड़ अशोक के पत्ते वगैरा सब पत्ते मिलते है।

मल्टी क्वेश्चन रेस्टोरेंट है यहां पर होटल है यहां पर सामान वगैरा मिलते हैं।

ये डैनी सैलून है यहां पर कटिंग वगैरा की आती है कलर वगैरा लगाए जाते है।

यहां पे शेविंग वगैरा भी बनाई जाती है यहां पे एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और सैलून में बहोत ज्यादा भीड़ लग लगी हुई है यहां पे एक बाल्टी भी बाहर रखी हुई है।

और डेली अच्छा है और फिर ये एम पुलिस वाले की कार भी खड़ी हुई है यहां पे इसकी लाइब्रेरी भी --

सी_एन_जी मतलब एल_पी_जी और डीजल पेट्रोल यहां पर भरे जा--

ये एक टूटा फूटा हॉस्पिटल है यहां पे चौबीस घंटे इमरजेंसी सुविधा है ये हॉस्पिटल बहोत बड़ा है।

गोलछा पिक्चर हाल है ये पिक्चर हॉल बहोत ही पुराना है सबसे जयपुर का फेमस है ये हाल बहोत बड़ा है।

ये बुक स्टोर है यहां पर स्टेशनरी है यहां पर किताबें कॉपीया एन_सी_ई_आर_टी सी_बी_एस_ई आर_बी_सी --

और यहां पे सिम पोर्ट की जाती है रिचार्ज करा जाता है और नई सिम निकाली जाती है एयरटेल की और दो लड़के खड़े हुए --

यहां पे छत डाली है अभी यहां पर छिड़काव कर रहे हैं तीन चार आदमी लोग वहां खड़े हुए --

और तेल की सरसों की तेल की बोतले मखाने वगैरा नमकीन के पैकेट वगैरा और बिस्किट वगैरा और भी यहां पर टॉफी वगैरा रखी हुई --